यहाँ पर एक बड़ा सा खंभा बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर एक शेर बना हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है जो बांसे के ऊपर लगा हुआ है।

और रेड कलर से दिखाई दे रहा है और उधर बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है।